एक आदमी खड़े है ब्याँकी दुकान में कोलगेट कोका कोला दिखाई दे रहा है और ऊपर दो किशनजी की फोटो दिखाई दे रही है चिप्स दिखाई दे रही है।

किताब के बगल में एक किताब और है किताब के बगल में --

सैनिटाइजर की मशीन है अब हमारी मिनट पूरी हो चुकी है फाइल स्टार्ट हो चुकी है ईब देखिये ये हमारी कितना मिनट हुआ है या नहीं ठीक है ओके बाय बाय ।